पी डबल टी बस डोट इन और कोल करिये ऐट ऐट डबल सिक्स वन डबल फाइव ट्रिपल ऐट पर और जाइए।

यहाँ पे सब लोग घुमने आते--